एक गेट लगा हुआ है जिसका रंग सफेद नजर --

आ रहा है ऊपर आसमान दिखाए।

ऊपर शीट लगा हुआ है शीट का रंग बुरा नजर आ रहा है।

नीचे जमीन का रंग बूरा नजर आ रहा है आसमान का रंग सफेद दिखाई --

ऑरेंज रंग के खंबे लगे हुए हैं ऊपर काला और सफेद शीट लगा हुआ है।

सामने एक बॉक्स दिखाई दे रहा है।

गुलाबी और बुरे रंग की दीवार से दिखाई दे रही है ऊपर छत नजर आ रही है जिसमें लाइट नजर --

यहां एक हॉल नजर आ रहा है जिसका रंग --

पर्पल और सफेद रंग की निवाल नजर आ रही है उसके पास पेड़ दिखाई दे रहे हैं पेड़ों का रंग

नीचे घास दिखाई दे रही है जो की हरे रंग की है ऊपर आसमान नजर आ रहा है आसमान का रंग सफ़ेद दिखाई दे रहा है।

पीछे हुए रंग का पर्दा नजर आ रहा है।

यहां एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है जहां पर पटरी नजर आ रही है पटरी का रंग बूढ़ा दिखाई दे रहा है।